एक दुकान है इसमें बहुत सारे हॉर्लिक्स है और चूड़ी है और बहुत सारे सिंदूर के डिब्बे रखे हुए हैं और बहुत सारे बोर्ड आरु है जो अब तक बहुत सारे हैं।